सामने काफी लोग भी खड़ें हैं।

एक आदमी ड्रिल से लकड़ी जोड़--

दुर्गा मंदिर है इसमें लोग घंटी बजा रहे हैं।

काफी लोग यहां खड़े है।

इनके ऊपर ब्रिज स्टौन के--

इन सब ने रेड कुर्ते पहने हुए हैं।

खिले हुए हैं कुछ लड़के--

ये एक संत जगदीश मुनि आचार्य जी का--